देखिये यहाँ पे पंखे लगे हुए हैं। बहुत सारे मकान हैं पाया है और ये पता नहीं क्या है।

देखिये यहाँ पे सुधा दुकान का भी दुकान है ना। यहाँ पे दूध मिलता है एक लेडीज खड़ी है एक जेंट्स है और बहुत सारी भी लेडीज जेंट्स है गुब्बारा है खेलना वाला है देखिये मेला लगा हुआ है।

हरिहर श सोनपुर का मेला है प्रमाण है।

नीचे किसी का घर है ऑफिस है। बिना अंदर जाना अलाउ है। चेयर पे आदमी बैठा हुआ है। पिंक कलर का पर्दा है और लोहे का पाइप है और पिंक कलर का का दीवार पर भी कलर भी किया गया है।